सब डेकोरेशीन करके राखा हुअ है कोई आदमी नाही आया--

एक चील का स्टैचू बनाके है और फीके बैकग्रॉउंड पूरा वाइट में है।